वहां पर बोहुत सारे कपड़े बिक रहे हैं जिसमे हैंगर मे टंगा हुआ और इसमें --

यहां पे एक आदमी बैग ले कर जा रहा है और रात का समय है।

रोड नीर छोटी महजीद गया।

बोहत अच्छा शॉप है यहां का सकते हैं डिस्काउंट --

गया यानि की यहाँ पे आप --

उधर से बोलिंग करता है इधर से बेटिंग सब है और बगल में एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट की तरफ बन रहा है।

पर्यटर {पर्यटन के लिए ये बोहुत ही अच्छा है। बिहार में जो राजगीर घूमने आते हैं विदेश से वो --}

एक हाथ से कुछ बता रहा और पीछे एक लड़का है जो अपने नाखून को ओ मुँह से --